पेड़ पौधा भी है । आगे जंगल हैपेड़-पौधा भी है । दुकान हैबंगला है गाडी घोडा है घर भी है ।

हरा हरा पौधी है बैंगन हैआलू है है |

यहाँ पर दुकान है। बहोत बड़ा सा दुकान है। बिल्डिंग भी है। आदमी सब जा रहा है आ रहा है।

पक्का का घर भी है मोटरसाइकिल हैपक्का का घर है है

इ सिलाई मशीन भी है ।

काटने वाला मशीन भी है मशीन से कटवा रहा है सब केश।

जिम कर रहा है बॉडी फुला रहा हैं सब अच्छा है लग रहा हैं देखने में भी।

यहाँ पे बहुत सारा आदमी भी है आदमी है बहुत सारा आदमी है लइका हैबच्चा है ।

पत्तियाँ भी है । पेड़-पौधा भी है ।

बहुत सारा चीजे है । एक आदमी देख रहा है | लइका सब भी है बहुत तरह का |

बहुत सारा चीज है जमीन है परती है ।

बिल्डिंग है । बहुत सारी दुकान में मोटरसाइकिल है बैक में स्कूटी है नंबर गाडी है |

दुकान है आदमी भी है बहुत सारा आदमी है अच्छा लग रहा है अँधेरा है लाईट जल रहा है ।

और अच्छा लड़का मोटर से पानी भरता है । फूल सब मे हरे हरे पत्ता भी है एक पका का घर भी है ।